बहोत सारे लोग खड़े भी है उसमें से पांच छे जन ने एक ने थैली लिया है एक ने बैग लटकाया है दो ने बैग लटकाया है।

टाइल्स लगा हुआ है और वो घाट पे लेटा हुआ है अपने बिस्तर पे।

एक स्विमिंग पूल है जिसके अंदर पानी नहीं है सब पाइप लगाके--